इस चित्र में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की पानी पी रहा है उसके हाथों में इक बोटल है।

साइड मे एक पेन है जो की पिंक कलर का है बहोत सारी मशीने है एक आदमी है जिन्होने बरन पहनी है।

इस चित्र में हमें एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।